एक एयरपोर्ट है जहां पर एक आदमी खड़ा हो के फोटो खींचा रहा है जिसके पीछे एक एयरोप्लेन खड़ी है और वहां पीछे में हमे देखने को कुछ लोग भी मिलेंगे।

ये एक फूलों की मंडी है जहां बहुत से लोग फूल खरीद रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।

बहुत सारे हमें यहां पे ताजे-ताजे फूल देखने को मिलेंगे जिनमें से कुछ मेरीगोल्ड है कुछ रोज है कुछ तो कुछ येलो रंग के हैं कुछ गुलाबी कुछ ब्लू ।

डांस नेशन का यहाँ पर हमें एक लोगो भी देखनो को मिल रहा है।

उनके पीछे में एक ओर यहाँ पे हमें एक पोस्टर जैसी देखनो को मिल रही है वहाँ पे उसके साइड में हमें कुछ ऑटोस खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं।

सुंदर तरीके से यहां पे पेड़ की टहनियाँ लगी हुई है। मानो जैसे की वो गेट के ऊपर भी सहारा दे रही।

यह सारे के सारे अलग-अलग आकार के है जो की बहोत प्यारे लग रहे है।

दृश्य मे हमे एक प्रोग्राम देखने को मिल रहा है जिसमे की एक लड़की बहुत सुन्दर से कपड़ो मे सफेद रंग की साड़ी और लाल कलर उसमे बार्डर लगी हुई है जो की क्लास--क्लासिकल डांस कर रही है।

इसमें एक औरत देखने को मिल रही है जो की चेयर पे बैठी हुई है वो दूध की बिक्री कर रही है पीछे हमें एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है जो की कागज के ऊपर कुछ लिख रहा है।

ये एक स्टेशनरी शॉप है जहां पर हमें बुक्स पेन पेंसिल कलर और भी अन्य चीजे देखने को मिल रही है।

दृश्य एक बुक की दूकान का है जहाँ पर हमें कुछ लोग खरे बुक्स खरीदते हुए नजर आ रहे है।

ये एक साइकिल की दुकान है जहां पर सायकल की बिक्री हो रही है सायकल हमें अलग-अलग और रंगीन रंगो में दिख रहा है कुछ लोग यहां पर मौजूद है कुछ सायकल को चेक कर रहे है और कुछ यहां पे खड़े है।

कुछ यहां पर मछली की बिक्रिया कर रहे है ये दृश्य सुबह का दृश्य है देखने मे यह बड़ा सुन्दर लग रहा है।

यह एक मछली की दूकान है जहा पर हमें मछली देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर मे हमे दो लोग देखने को मिल रहे है दोनो अपने अपने हाथ को गाल पर रखे हुए फोटो खीचा रहे है।